इ सब देखे झुलवा छो इ ट्रेन लगे छो चले छो इ सब मेला में आवे छो।

अन्दर लग छे स्विमिंग पूल पोखर रहिये |

जिगर में नहावेव सबवे दिहि एगो भूरा कराल हे ।

बारे गा जिम ही दिखेत हे या सीधे लागए घर दीखते हे।

इ देख अ ऐसा लग ला है च रा न को अदमीयै न रहलो जई कौन मकानों च हमरो न पता अ चाय बारे-बारे जंगल जाली छ।

अ लाल लाल एको साईड बहुत महेंगा पेट्रोल दे चो।

ओर देखें लाल हरा पीला रंग का सब मूर्ति छै बहुत बढ़ियाँ-बढ़ियाँ छै।

देखे फत कोई भी टागले छ य एक लाल पहाड़ी एरिया में तो अच्छा छे घना य गुसने के खुच जालक लें करतो।

इ देखो स्वीमिंगपुल घूरे घूरे वाला छीके।

आइ देखो कितना अच्छा बना रहल झे |

आ उपरे हल्का हल्का उजला-उजला रंगी देल छै रड के रंगी देल छै उ आदमी देखो पानी में बही रहल छै।

हई दखा हॉस्पिटल लगे छै।

हई देखो इ मंदिर--

इधर देखें छे बाइक भी लगलो छै।

ऐ छें यहाँ हटिया लागलो छै और यहाँ पे देखे छै गाड़ी-उडी चलय करय छै।

हे देखय छै हीया मॉल छै लगब करय छै।

यह देखो लग रहा है की बहुत स्टाल होय है जेसा बेठे है आगे सती सब दिख रहा है।

लगाय देयल छय पुलिस भी छय |